यहाँ एक बड़ा ग्राउंड हैं ग्राउंड के पास एक ट्रेन है ट्रेन के पास --

दुकान के पास दो आदमी हैं दो आदमी के पास --

के पास उधर मतलब के पीछे घर भी है बहुत सारा घर है।

मोटर साइकिल है ब्लू कलर की साइकिल है रेड कलर कि गाड़ी है मोटर साइकिल लड़की जा रही है ।

पेड़ पौधा भी हैं और नारियाल का पेड़ हैं।